प्लस कुछ लड़के हैं यहां पर एक लड़के ने लाल कलर की कैप पहनी है।

बिल्डिंग के बाहर के लिए एक चार दिवारी है जिसका कलर ग्रीन कलर का है सामने एक फील्ड पड़ी हुई है।

किसी मेले के बाहर का फोटो है जिसका एक गेट है बड़ा सा जिस पर प्रणाम लिखा हुआ है।

ये किसी एक छोटे बच्चे का फोटो है।

हा पैरेंट्स भी बैठे हुए हैं एक यहां पर टेबल के साथ में शायद कोई हेड टीचर भी बैठे हुए हैं।

जहां पर एक भाई बाइक से जा रहा है साथ में ही एक जेंस और एक लेडीज बाइक से जा रहे।

जो दुकान के अंदर ही खड़ा है इसमें वाइट कलर की शर्ट पहनी है शर्ट पर बहोत सारे पीले पीले दाग लगे हुए हैं।

ये फोटो ठंड का है इसलिए काफी धुंधला सा है।

यह एक दुकान है दुकान के काउंटर के ऊपर बहोत सारे डिब्बे रखे हुए हैं डिब्बे के ऊपर एक बारकोड रखा हुआ है।

दुकान के ऊपर के लिए शैंपू क्रैकर्स और भी बहोत सारी चीजे लटकी हुई है।